और ऊपर बादल भी साफ़ है। इसका मतलब ये है की बारिश के कोई बी आसार --

यहाँ पर गोल्ड प्लस की फेयरनेस क्रीम रखी हुई है तथा उसके पीछे ही दो तीन शीशे --

तथा यहाँ एक डब्बा भी रखा हुआ है जोकि कंपनी शहनाज हुसैन का है।

जिसपर यहाँ जो-जो चीजे होती है उसके बारे में बताया गया है। जैसे हेयर स्टाइल ब्राइडल मेकअप ।

बर्क आउट कर रहा है तथा उसके मसल्स भी साफ़ दिखाई रहे हैं।

व्यक्ति इ-रिक्शा चला रहा है जिसके --

सामने में बहोत बड़ा हैलोजन लाइट लगा है यह रात का समय है।

उनके आंखों पर चश्मा लगा है और दुकान के अंदर रैक में बहोत सारा सामान दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर एक महिला की है। जिन्होंने नीले रंग की साड़ी पहन रखी है। माथे पे बिंदिया --

यह तस्वीर एक गार्डन की है जिसमे एक महिला नीले कलर का सूट पहन कर --

और येलो कलर का यानि पीले रंग का छोटा एक बॉक्स भी रखा हुआ है।

सभी गैलरी के सामने में लोहे के एंगल लगे हुए हैं और बिल्डिंग सफ़ेद रंग की है।

पैंट और सफ़ेद शर्ट सिर पे टोपी लगाए हुये बैठा हुआ है।

जिसमें बोहोत सारी बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं जिसके सामने में हरे कलर का --

ये तस्वीर एक बहोत बड़े लोहे के गेट की है जिसका एक भाग --